स्कूटी खड़ी है सामने एक कार खड़ी है येलो कलर की और कार के आगे एक गाड़ी है सफेद कलर की।

और लकड़ियों का को गेट लगाया पड़ा है। इधर एक छोटा सा पौधा है। दो-तीन पौधे हैं। आक के--

यहां पर बाहर टेंट लगा हुआ है और टेंट के अंदर बहोत सारी मोटरसाइकिले खड़ी है लाइन मे।

सामने पंजाब नेशनल बैंक है बैंक के बाहर बहोत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और एक स्कूटी खड़ी है।

यहां पर सामने बादल दिखाई दे रहा हैं बादल पे सफेद कलर के बादल बने हुए हैं जो कुछ आकृतियां बनी हुई हैं।

यहां पर सामने एक बहोत ही ऊंची और बहोत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर भी बहोत सारे कमरे बने हुए हैं।

यहां पर तरह तरह के कुरकुरे चिप्स है और किराना इस्टोर के सामान मिलते है।